यह तस्वीर एक सड़क की है। यह कच्ची सड़क है जिस पर बहोत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ--

ये तस्वीर एक बहोत बड़े होटल की है इसमें लाल रंग का कालीन बिछाया ग--

ये तस्वीर बहोत सारे फूलों की है इसमें बहोत सुंदर पीले रंग के गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ पंखे भी लगे हुए हैं और यहां पर लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं बहोत सारे लोहे का--

ये तस्वीर एक खेत की लग--

ये तस्वीर एक बहुत बड़े कमरे --

ये तस्वीर एक किले की है यहां पर बहोत सारे झूले भी दिखाई दे र--

ये तस्वीर दो पति पत्नी की है यहां पर शादी हो रही है।

नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है इसके पास कई पेड़ पौधे और झाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर एक प्ले ग्राउंड की है यहां पर एक लड़का खेल रहा है।

नारंगी रंग की बड़ी कुर्सियां भी रखी हुई--

और यहां बहोत सारी कास भी उगी हु--

यहां कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं इसके पास एक स्कूल बना हुआ है जिसकी दीवारें नीली और गुलाबी हैं।

ये तस्वीर एक जंगल की है इसमें बहोत सारा--

यहां एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यहां दो कारे भी खड़ी हुई है और यहां एक मोटरसाइकल भी दिखाई दे रही--

रोड के दोनों तरफ बहोत सारी--

ये तस्वीर एक खेत की दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर बहुत सारी गायों की है।

और यहां एक बहोत बड़ी गिफ्ट स्टोर और टॉयज की शॉप है।

खेत में एक स्कूटर खड़ा हुआ है।